माता सरस्वती जी की मूर्ति है और पंडाल लगा हुआ है सामने मूर्ति माता जी की सजी हुई है।

और ऑरेंज कलर के और पंडाल भी बहुत अच्छा खूबसूरत सा लग रहा है अ पूजा हो रही है यहां पे--

चारों तरफ हरियाली दिख रही है हरी हरी घास भी है ।

बेड पर सफेद रंग की चादर बिछी हुई है तकिया रखी है एक फोन रखा है ।